यह एक बहोत शुंदर सा फिगर दिखाया गया है इस फिगर में --

यह एक बहुत शुंदर फिगर दिखाया गया है इस फिगर में बहुत सारा बहुत ज मस्त पहाड़ दिखाया गया है इसमें लोग बहुत दूर-दूर से --